पेड़ के ऊपर लाइटिंग लगी है ये गोल्डन कलर का टेंट है।

कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई है राधा कृष्ण की मूर्ति है।

ये एक गार्डन है यहां पास कई लोग झूला झूल रहे हैं।

चांदी के समान रखे हुए हैं।